यहां पे एक बड़ासा ग्राउंड या बगीचा नजर आ रहा है जिसमें पेड़ पौधे नजर आ रहे --

लाइट लगी हुई है ऊपर खंभा लगा हुआ है।

ग्रीन लगी है बाहर कुर्सी डली हुई है दो कुर्सियां डली हुई है एक आदमी मैन दिखाई दे रहा --

प्लेटफॉर्म कि सीढ़ियों पे कुछ आदमी भी नजर आ रहे हैं कुछ ट्रेन भी भी नजर आ रहे हैं ट्रेन का ऊपरा भाग दिखाई दे रहा --

पिलर बना के ऊपर एक नाम--

एक सर्फ का पैकेट रखा गया है सर्फ कि बहुत सारे पैकेट है पाउडर की डिब्बे रखी गई है बहुत राशन का फॉर्च्यून सामान रखा गया है बहुत --

एक कांच का इधर पता नहीं टेम्पो दिखाई दे रहा है एक टंकी दिखाई दे रही है टंकी पे अलग अलग कलर के पोस्टर लगाये --

यहां पे एक सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के आगे एक बाग या बगीचा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ --

एक खंभा दिखाई दे रहा है रोड के पीछे जो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है सामने चलता हुआ एक ट्रक दिखाई दे रहा है उसके आगे एक खंभा दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में अलग अलग प्रकार की कमरे दिखाई दे रहे हैं उसे पे लगे हुए ए_सी कूलर दिखाई दे रहे हैं।

एक गुलाब चंन्न करके कुछ दिखाई दे रहा है दुक गुलाब चंद की दुकान दिखाई दे रही है।